यह एक उ काफी बड़ा --

ये एक साइड पर इसकी चिन्हा लगा हुआ है जैसे कि हम इस चिन्हे पर चढ़ कर जाए।

जहां पर फ्लाइट लैंड होती है और यह इन्डीजो फ्लाइट है।

का कलर नीला और सफ़ेद है। यहाँ पे ये व्यक्ति खड़े है जोकि अपनी फोटो खिचा रहे है।

यहा पर ये सीसा लगा हुआ है जोकि डांस का अपना स्टाइल हम देखकर कर सकते --

तैरने के लिए जा रही है। इसमें ख़ूबसूरत सा घर बना हुआ है जैसे कि छोटा सा।

हुई होती है। यहां काफी पत्थर पड़े हुए हैं। पत्थरो पे जाने का यह रास्ता है।